उसके पीछे बाईं ओर कॉफी और पिंक कलर के पर्दे लगे हैं।

और ऊपर बहुत अधिक मात्रा में फ्लावर की डेकोरेशन --

यहां बहुत ही बड़ा है यहां पर मल्टी शेड का कारपेट बिछा हुआ है।

यहां एंट्री करने के लिए बहुत ही सुंदर डेकोरेशन गई है। यहां अधिक मात्रा में फूलों की डेकोरेशन है।

वहां कुछ लोग हाथों में प्लेट में जूस --

व्हाइट कलर का पत्थर लगा हुआ है मेटों का कलर व्हाइट ब्लैक ग्रीन येलो --

लिखा हुआ हैं आधार ढीली और वहां बहुत ही अधिक मात्रा में बैग टंगे हुए हैं हैंड बैग पिट्ठू बैग --

टोल टैक्स काटा जाता है और वहां ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है वहां पर लिखा है थैंक्स फॉर योर विजिट --

और यहां हर मेरे गाने के लिए ग्रीले और वहां चिटकनियां और--

यह एक पैलेस है जहां कि वहां शादी हो रही है और एक--

कुछ ने साड़ी येलो कलर की और सूट पहने हैं।

और दो पत्थरों के ऊपर एक आदमी और एक औरत --

यह एक फिश की दुकान है।